इसकी खिड़कियां और दरवाजे भी नजर आ रहे है।

एक स्कूटी के ऊपर ब्लैक है कपड़ा भी ढका हुआ है।

और यहां पे मुझे कुछ झूले भी नज़र आ रहे है जिनमें बच्चे खेल रहे हैं और आस पास हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां भी नज़र आ रही हैं।

बीच में एक छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है और आस पास मुझे हरे भरे पेड़ और--

इस तस्वीर में मुझे एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

यहां फोटो फ्रेम्स भी दिखाई दे रही है और मुझे यहां पे वॉलपेपर भी नजर आ रहा है।

आस पास मुझे बहुत सारे बिल्डिंग और हरे भरे खेत भी नजर आ रहे हैं।

स्कूल का बच्चा छुट्टी होकर घर भी जा रहे हैं आस पास मुझे हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक गार्डन नज़र आ रहा है जहां पे बहोत सुंदर सुंदर पत्तियां और पौधे लगाए गए हैं यहां पे मुझे एक लेडी पानी देती हुई नज़र आ रही है।

और बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं बैठने के लिए मुझे यहां बेंच दिखाई दे रहा है और--

मुझे यहां पे एक आदमी चेयर के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे--

यहां मुझे जूसस की बॉटल नजर आ रही हैं और कुरकुरे चिप्स का पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ मिठाइयां नजर आ रही हैं।

मुझे यहां पे बहुत सारे टेबल और चेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे बच्चों के घर यही पे हैं।

इस तस्वीर में मुझे व्हाइट कलर की दो बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके दरवाजे और शीशे के बने हैं और खिड़कियां भी शीशे की नज़र आ रही है।

कुछ लाइट्स भी यहां पे जली हुई है और एक तरफ--